यहां मुझे एक टी_वी दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ टेबल दिखाई दे रहे है।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

यहाँ मुझे कुछ लोग दिखाइ दे रहे है।

यहां मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।